म आदमी खड़ा हुआ है जो की अपने जैकेट मे हाथ डाले हुए है सफेद पेंट और कत्थई कलर के जूते पहने --

यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बहौत ही शानदार दृश्य --

यहाँ आप देख पा रहे है कि या आपको जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से आप नहीं देख सकते लेकिन आपको देखना होगा तो कुछ यक एक आधा लड़का बैठा हुआ --

यहाँ पर आप देख पा रहे हैं की आपको एक बहोत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें में आपको बहोत बड़ा गेट दिख रहा है।